ये दिखाई दे रहा है।

पर मुझे यहां एक नदी दिखाई--

कुछ खजूर के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे एक बाइक दिखाई दे रहा है।

बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।